यह एक केक है वाइट कलर का नीचे भी डिजाइनिंग की गई है रेड कलर की ऊपर डिजाइन की गई है।

जिसमें हार्ट शेप बनाए गए हैं और फ्लावर भी बनाया गया है यहां पे केक बेकरी की दुकान है।

और यहां माला पहना रखी है यहां पे मगर कोई भी दिखाई नई दे रहा है टाइल लगी हुई है और --

अलमारी लोहे के पेचकस और बहुत सारी चीजें रखी हुई है यहां पॉलीथिन और भी पड़ी हुई है।

घर बने हुए हैं आस पास और यहां कांच के भी लगा हुए है यहां पे दो कूलर रखे हुए है।

काम से आया है यहां पे बहोत सारी चेयर लगी हुई है जहां कस्टमर और बैठने के लिए बनाई गई है।

यह एक योगासन है यहां बहोत सारे कांच लगे हुए हैं एक भी तैयार किया गया है जहां पर योग किया जाता है।

लग रहा है जैसे कि ये गौशाला सी है यहां पेड़ पौधे कुत्ते भी दिख रहे हैं।

यह केक की दुकान है यहां पे चॉकलेट फ्लेवर वनेला फ्लेवर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हर तरीके के केक बनाए हुएं हैं।

व्हाइट कलर के पूरे आसपास की दीवार बनाई गई है ए_सी भी लगी हुई है और टॉर्च भी लगातार लगाई --

एक अंकल है जो यहां भाषण दे रहे हैं लगता है यह कॉलेज के प्रिंसिपल है यहां पे सारे बच्चे वो बैठे हुए हैं स्टूडेंट बैठे हुए हैं।

मटकी लगी हुईं हैं और से यहां पीतल का लोटा रखा हुआ है पास में एक कार्टून रखा हुआ है नीचे मटकी का --

यहां पे छोटी सी बड़ी सारी चीजें मिलती हैं बच्चों का सामान बड़ों का सामान स्केल रबर पेंसिल ।

उससे पेहले एक चौराया बना हुआ हैं पार्क के अंदर यहां पे बहोत सारे लोग हैं।

यहां पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहां पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है घर झोपड़पट्टी --

यह एक गाड़ी खड़ी है ये गाड़ी दूर खड़ी है केसरिया रंग के कचरे वाली गाड़ी है और एक बाइक भी खड़ी है।

यहां आसपास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं यह सड़क है और यहां पे ये एक दुकान है जो बंद है।

यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है यहां पे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं रेड कलर की बेंच लगी हुई है।

टमाटर खीरा ककड़ी और सब सब्जियां मिलती है यहां पे बहोत से लोग है जो सब्जी खरीदने जाते है उसको सब्जी बेच रहे है और--

बहोत सारेए बाइक स्कूटी मोटरसाइकिल आके कैंपर पर रखा हुआ है यह एक लड़का जा रहा है जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है।

ये ग्रीन कलर की मस्जिद है जहां उर्दू मे कुछ लिखा हुआ है ग्रीन कलर के पर्दे लगे हुए हैं।

यहां पे पानी भी दिखाई दे रहा है पानी साफ नहीं है जिसमें कुछ लकड़ियां टूटी हुई है कुछ फाटक रखे हुए हैं।

वे नारियल का तेल साबुन किंडर जॉय और--